यह एक रोड पर का दृश्य है।

यह एक हॉल का दृश्य है हॉल की दीवार की कलर व्हाइट है और नीचे में रेड और पर्पल कलर किया गया है।

नदी में ढेर सारा पत्थर और बालू भी है।

नदी के किनारे साइड में पेड़ पौधा लगा हुआ है।

उसके बगल में भी एक बोर्ड लगाया हुआ है।

यह एक रोड का दृश्य है रोड पर ढेर सारा टोटो और व्यक्ति हैं।

यह एक हॉल का दृश्य है हॉल की दीवार का कलर ब्राउन है और नीचे में टाइल्स लगा हुआ है।

वही पर एक टेबल है टेबल पर एक कैलेंडर रखा हुआ है।

यहाँ पर ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं।

रोड पर एक कार और एक ऑटो भी लगा हुआ है।

वहीं पर एक पाइप भी बिछा हुआ है।

सीलिंग में ढेर सारा बल्ब लगा हुआ है और कहीं कहीं पंखा भी लगा हुआ है।

यह एक कमरे का दृश्य है इस कमरे में ढेर सारे लोग हैं।

एक लड़की को ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है।

जिम में शीशा लगा हुआ है जो की सीसा के सामने एक लड़का है वो ब्लैक कलर का गंजी और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ है।

यह एक छोटे से रेस्टोरेंट का दृश्य है इसकी दीवार की कलर मैरून है।

पीछे वाले दीवार में ब्राउन कलर का पेंट किया गया है।

यह एक किताब दुकान का दृश्य है।

इसकी दीवार में एक कैमरा लगा हुआ है।

यह एक स्टेज का दृश्य है।

यह एक मस्जिद का दृश्य है इसकी दीवार की कलर व्हाइट हैं।

इस दुकान में ढेर सारा अलमारी बना हुआ है।

दुकान के दीवार का कलर आसमानी है और दुकान के अंदर ढेर सारा अलमारी में किताब और कॉपी रखा हुआ है।

यह एक रोड पर का दृश्य है रोड पर ढेर सारे व्यक्ति हैं और रोड के किनारे बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है।

बिल्डिंग के नीचे मे ही ढेर सारा टोटो लगा हुआ है।

अंदर में ढेर सारा अलमारी बना हुआ है और अलमारी में ढेर सारा कूट सजाया हुआ है।

स्टेज पर दो व्यक्ति भी हैं।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

बैंक के नीचे ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं।

यह एक पंडाल का दृश्य है।